ये नदी है नदी के किनारे एक बोट लगी हुई है अ--कुछ लोग--एक आदमी बैठा हुआ है।

यह डॉक्टर्स जो किसी हॉस्पिटल के अंदर विक्ट्री का निशान लिए खड़े है और इनके मुँह में मास्क लगे हुए है।

और पिले और उजले लाल कलर से इसे सजाया गया है लड़की जो है लेहंगा पहनी हुई है रेड और मैरून कलर का और लड़का गोल्डन कलर का शेरवानी --

और पीछे में जो मकान है वह फुस की --

--और बहुत सारे बच्चे है और सब चार्ट पेपर को खोले हुए है कुछ कुछ न कुछ अ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

ऑफर्स भी दिख रहे है ऑफर्स के बोर्ड लगे हुए है और बहुत सारे डिजाइनिंग कपड़े डिस्प्ले में टंगे हुए है। और बहुत